इस चित्र में एक कॉलेज है कॉलेज व्हाइट कलर की बिल्डिंग है।

फुटपाथ पे ग्रीन कलर का घास है और चार नदी के चारो तरफ ग्रीन कलर के बड़े बड़े झाड़ है।

इस चित्र में फोर्ट कोर्ट सोफे हैं सीलिंग पे व्हाइट कलर्स के लाइट लगे हैं।

बिल्डिंग के बाजू में थोड़े ग्रीन कलर के पेड़ है एक गाड़ी है।

और यहां अमेरिकन अमेरिकन ईगल बोलके एक बोर्ड है।

बैरेटर कलर में कुर्सियां है।

इस चित्र में एक मंदिर है।

इस चित्र में एक बेकरी का शॉप --

यहां एक बड़ा जिम है।

और यहां रोड पे वाइट कलर के स्पॉट्स डालके है।